यह पार्क चारों ओर से घेर दिया गया है इस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं।

फंक्शन बहुत ही सुंदर से फूलों के गेट बना दिए गये हैं यह जगह पर दो आदमी खड़ा है जो की जूते पहने है ये लोग हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं चश्मा पहने हैं ।